इधर एक पानी का डैम नजर आ रहा है।

एक आदमी इधर फोटो खिंच रहा है।

इधर बहोत सारे बेटियां बेटे लोग --

इधर डंबल भी है चार पांच आदमी स्कॉट कर रहे है।

इसे तो हम सब लोग जानते है ये ये लाल दरबार है।

बैंक में मौजूद है जहाँ पे आधार कार्ड अपडेट भी कर सकते है।